एक व्यक्ति फोटो क्लिक करता हुआ दिखाई दे रहा है।

दरवाजे और खिड़कियां बहुत सुंदर दिखाई दे रही है।

तस्वीर में दो केक रखा हुआ है एक पीले रंग का और एक गुलाबी रंग--

गुलाबी रंग के केक में सफेद रंग का क्रीम और चेरी रखा हुआ है।

यहां बहुत सुंदर लाइटे लगी हुई है।

बहोत रंग बिरंगे झूले दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर पुराने किले के जैसे दिखाई दे रही है।

इस मछली घर के जस्ट बगल में एक कूलर दिखाई दे रहा है।

यह दृश्य में एक बड़ा सा हाथी दिखाई दे रहा है।

एक आदमी हाथी के ऊपर चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

पीछे की तरफ एक ब्रिज दिखाई दे रहा है सफेद रंग का।

यह तस्वीर एक साइकल दुकान की दिखाई दे रही हैं जिसमें बहोत सारे साइकल दिखाई दे रहे है।

यह तस्वीर एक पुस्तकालय की है यहां बहुत सारे पुस्तक रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने की तरफ दो गुंबद निकले हुए दिखाई दे रहे हैं।

फर्श पर हरे रंग के दरी बिछाई हुई है।